लाल कलर की मठ्ठी यहाँ पे दिख रही है और यहाँ --

हरी भरी घास यहाँ पे जाली मार के फूल बनाया गया है यहाँ --

ये एक बैग अ स्टेशनरी यहाँ पे स्कूल बैग --

ये एक बड़ा सा गीराउंड है यहां पे जाली मारी गई झूले है बहुत सारे यहां पे।

यहां पे बहोत सारे लोग पी रहे हैं अंदर मछलियां भी आजू बाजू बाउंड्री खींची गई है।

चार्जर भी यहाँ पे मिलते है पानी का यहाँ पे डब्बा भी रखा हु --

बहुत सारे बिल्डिंगा भी दिख रहे हैं और कमेरे भी यहाँ पे लगाए गए --

भी कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे पे फैना है मशीनों को भी यहाँ पे रखा है ताकि के रिला भी यहाँ पे कलर कलर के --